उधर से भी एक स्विमिंग पूल है एक्चुअली तीन चार स्विमिंग पूल एक साथ बना के है।

खाली खाली सा हे लेकिन बहोत ही प्यारा सा मा लग रहा है बहोत ही खूबसूरत सा पानी एकदम ब्लू कलर का नीला नीला पानी--

ये गेट की फोटो देखी है किसी पर्सनल मकान की फोटो देखे हैं।

अह गेट बड़ा ब्यूटीफुल बना के है क्या खूबसूरत सी कारीगरी बना के है।